और एक एल_इ_डी टी_वी भी टंगी दीवार पर टंगी हुई दिख रही है।

और एक पेड़ भी लगा हुआ है जो कि हरा भरा है।

यहां पर मुझे बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पक्की सड़क दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत बड़ा घना जंगल दिखाई दे रहा है जहां बहोत सारे घने घने पेड़ लगे हुए हैं।

मुझे ऐसा लग रहा है लगता है कोई एक ऑफिस है।

यहां पर मुझे बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

अलग अलग रैको में बहोत सारी अलग अलग किताबे रखी हुई है।

यहां पर मुझे एक किताबों की दुकान दे दिखाई दे रही है।